जींस पैंट्स है शर्ट्स है लाल कलर चेयर है ग्लासेस है।

एक लकड़ी को चिप लगा कोर क्या भी है आदमीस हैं।

रेड कलर है बड़े व्हील्स है छोटा व्हील्स है।

इधर एको मंदिर है लक्ष्मी अम्मावरु है।

आदमी जाता है आदमी आता है लकड़ी है लड़का है लडकी है।

इ पोहाई बड़े घर हैं घर के ऊपर झंडा है।

बड़े बड़े लाइट्स है नेवर गिव इंग्लिश में नाम है।

इधर बड़े रोड हैं रोड के ऊपर साइड एक आदमी मिलकर क्या भीं देखता हैं।

एक विंडो देखता हूं ब्लैक कलर है ऊपर साइड ब्लैक ब्लू है।

अ ओ चोट कर है कुछो है स्टेप्सो है ग्रिलिंग मिशन है।

ग्रीन ग्रे गिटार है ब्लू गिटार है लाल कलर पीली कलर गिटार है।

बच्ची है बच्चे है आदमी हैं बड़े-बड़े आदमी है छोटे-छोटे आदमी हैं।

नाम हैं एक आदमी के हैंड देखता हूं।

तीन कुत्ते से। दो ब्लैक कलर कुत्ते हैं। एक लाल कलर कुत्ते हैं।